और ऊपर में पंखा सब लगे हुए हैं लाईट की व्यवस्था भी की गयी हैं ।

उसके बगल में एक बाइक खड़ी हुई--

जो कि ऊपर में पेन सब है।

जोकि उन तीनो में से दो व्यक्ति का शर्ट पीला है और एक का काला नजर आ रहा है।

और एक लाइट है जो --